इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा घर है ।

ये किसी हॉस्पिटल सीन दिख रहा है ।

घर एक बहुत बड़ा कोई संस्था टाइप का है।

और वहाँ पे एक बोर्ड लगा है जिसपे कुछ लिखा हुआ है।